यहां पे कुछ बच्चे-- व्हाइट कलर में पोस्टर रखा है यहां पे बेंच है पीछे कुछ तार की खिड़कियां है यहां पर दीवाल है।

एक कुछ पिक कलर में कुछ रखा है कुछ कुछ बच्चों ने ड्रेस पहन रखी हैं कुछ ने कपड़े पहने हुए हैं एक के हाथ में व्हाइट कलर में कुछ रखा हुआ है।

यहां पर दो लोग बैठे हैं एक तस्वीर है एक भगवान की तस्वीर है एक भगवान बुद्ध की तस्वीर है एक जेट्स ने नीले कलर की कपड़े पहने है वहां पे वाइ--

एक जेंट्स है उसने चश्मा लगा के रखा है एक नाव है वहाँ पे नदी है वहाँ पे कुछ मिट्टी है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे है दो तिन जेंस है और कुछ पन्नी मैं कुछ रखा रखा है वहा पे टेबल पर और कुछ घास-फूस है वहा बगल में मकान है एंड डंडा लगा हुआ है वहा पे --

एक वहा पे एक टेबल रखा है एक रेड कलर की बाल्टी रखी हैं और कुछ पेन वैगैरा रखे है।

यहाँ पे बहोत सारे जैंट्स एंड लेडीज हैं। यहाँ पे एक आरती बुक स सेंटर है। यहाँ पे बुक है बहोत सारी यहाँ किसी के पास बैग रखा हुआ है।

एक बेन्च रखा है वहा पे पांच जेन्ट्स है वहा पे लैपटॉप रखा है बहुत सारी बुके रखी है।

एक नदी है वहा पे कुछ पुल वगैरा बने है दो नाव है एक उसमें दो एक दो जेंट्स है।

यहां पर कुछ लेडिस है यहां पर गणेश जी की मूर्ति है दुर्गा मां की है लक्ष्मी मां शरस्वति मां--

यहां पर एक लड़की खड़ी है कुछ अच्छा सा डेकोरेशन है यहाँ पे और डेर कलर कि कुछ माता जी के पैर के नीचे फुल चढ़े हुए हैं।

यहां पर दो कार एक ब्लैक एक व्हाइट एक चद्दर का डाला हुआ है।

उसके साइड में एक बाइक है। बहोत सारे जेंट्स लेडीज हैं वहाँ पे और कुछ पेड़ है। पेड़ में हरी पत्तियां हैं। दोनों साइड रॉड है।

एक फैन है एक लाईट है वहा पर एक टेबल रखा हुआ है।

एस.बी.आई. है यहाँ पे एक साइकिल रखी है यहाँ पे एक गेट है यहाँ पे पुटटी है इसमें नीले कलर मे कुछ --

यहाँ पे एक नदी है नदी में एक नाव है उसमे कु--एक दो लोग हैं यहाँ पे अलग-तलग वहां पे पुल दिखाई दे रहा है।